एक ऑटो इंडिया करके शोरूम है।

एक कार्यालय भवन है उसमें बहुत सारी विंडो हैं।

बाहर सड़क है गेट है एक खम्भा है |

इसपे वॉच वगैरा बेचीं जाती है और साइड में बाइक है एक आदमी खड़ा हुआ है।

इसमें बहोत सारे अंदर लोग खड़े हुए हैं पार्टी कर रहे हैं बाते कर रहे हैं बाहर डेकोरेट है फ्लावर्स से --

चिप्स वगैरा बाहर टंगी हुई है दुकान में शटर लगी हुई है।

और मिरर लगा हुआ है।